और यह देखने में यह नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिस देट लहसुन अ सामने ई साइड ऊ साइड बहुत सारा गाछ उछ है और ये नदी है बहुत बड़ा नदी है जिस में कि पानी का जलस्तर बहुत है।

पैर पकड़ के योगा कर रहे हैं और ये नजारा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह और यहाँ लाइट वगेरा लगाया गया है।